चढ़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और एक पास में--

इस तस्वीर में मैं देख पा रहा हूं मुझे एक जो कि बहुत बड़ा शोरूम दिखाई दे रहा है जिसमें काउंटर में दो तीन --

इस तस्वीर में मैं देख पा रहा हूं मुझे एक बहुत बड़ा हॉल दिखाई दे रहा है जिसमें रंग-बिरंगी कलर के अलग अलग प्रकार की --

बाजार का दृश्य दिखाई दे रहा है जिसकी साइड में कारें खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं टैक्सी जा आती जाती देख स दिखाई दे रहें लोग काफी पैदल आते-जाते दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में मैं देख पा रहा हूं कि एक लड़का दिखाई दे रहा है जो कि फोटो खिंचवा--

इस तस्वीर मे मुझे एक बहुत बड़ा हॉल दिखाई दे रहा है जिसमें सोनी कंपनी के कुछ आइटम रखे गये है ये एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप की दुकान है जहां पंखे टी_वी टेलीविजन और --

ये एक नर्सरी लग रही है जिसमें कई सारे हजारों पौधे जो कि एक ही लाइनों में सजाए और लगाए गए हैं इसमें हर प्रकार के अलग अलग क्वालिटी के पौधे --